हम इस फोटो में देख पा रहे हैं यह एक गैराज की फोटो लग रही है और यहां पर एक --

महिला बैठी हुई है। ये महिला कप मे चाय पी रही है। और इसके पास तीन बच्चे भी बैठे हुए है ।

और यहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ है।

लग रहा है और उसके पीछे कुछ व्यक्ति भी खड़े हुए हैं यह बहुत ही ज्यादा अच्छा --

यहाँ पर बहुत सारी महिलाए बैठी हुई हैं और यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई मोबाइल चला रही है और यह बहुत ही बड़ा मंदिर है और बहुत ही ज्यादा अच्छा मंदिर है।

इसने कला कुर्ता पहना है और सफ़ेद पाजामा पहना हुआ है। यह शियों का एक ग़मगीन उत्सव होता है और --

हम इस फोटो में देख पा रहे हैं यह एक नाई की दुकान की फोटो लग रही है और यहां पर बहोत अच्छे बाल काटें जाते हैं |